हरे रंग कट टी शर्ट और काला रंग के हाफ पैंट पहने हुए है सर में एक काले रंग के चश्मा पेना हुआ है एक पत्थर के सामने खड़े हो कर होय है।

इस तस्वीर में एक दुकान है दुकान में बहोत सी--